और इस ए व्हाइट कलर का पेंट हुआ घर है ।

चल रही है और हरा -भरा अगल-बगल में है।

जिस में जिस का जिसे पीला रंग से पेंटिंग किया गया है और बहुत तरह के फूल भी पारे गए है।

यह एक बहुत अच्छा नदी --

यह एक छोटा बच्चा है।

यह ए.टी.एम. चालू है।

है और उसके बगल में एकठो ए.टी.एम. है।

और यह बहुत ही साफ सुथरा --